यह एक बोहोत बड़ा मैदान है इस मैदान में आपको बोहोत से झाड़--

जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी पिंक शर्ट और --

स्टाल लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर एप्पल रखा गया है।

और एक आदमी इहा इस मिर्चियों को --

कनेक्टेड एक नल भी दिखाई दे रहा --

इर्द- गिर्द बोहोत से आदमी लोग खड़े हुए है कुछ लोग बैठे हुए है।